बड़े-बड़े देशों में होता है बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है।

फूल वगैरह है इसे सजावट के लिए यूज़ किया जाता है अपने घरो में घरो में बाहर कही भी जहा पे--

लोग बैठे हुए है बहुत बढियाँ है इससे बड़ी बड़ी सीटियों में ये रहती है दुकाने बहोत बहोत बहोत ज्यादा अच्छा लग रहा है इनको--

--मिल जाता है हमे यह बड़ी बड़ी सीटियों में रहती है लोकेशन भी बढियाँ दिख रही है साफ़ सुथरी भी बढियाँ है बहोत अच्छा लग रहा है देखने के लिए भी ऐसे ही--